फोटवा लगी हुई दिख रही है जैसे आइसक्रीम --

और यहां पर टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और स्टेबलाइजर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आसपास पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

बहोत सारे ग्रीन ओरेंज और वाइट कलर के बैलूंस भी दिखाई दे रहे है।